यहाँ पे हम जो बिल्डिंग देख पा रहे है बोहोत ही खूबसूरत है जो व्हाइट है और इसका गेट है ग्रीलस लगे हुए है वो ब्लू है।

यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर शॉप है जिसका नाम है दीप कंप्यूटर एवं जन सुविधा केंद्र।

इस तस्वीर मे हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक घर है और घर का जो गेट है। वह बहोत ही सुंदर है।

यह इसपे जो डेकोरेशन की गई है वैलून की व कागज की उम्म लड़ियों की व फूलों की जो बोहोत ही सुंदर है। ये जो अंकल खड़े है मुझे लग रहा है इस बस के ड्राइवर है वो। इनकी बस वाकई बोहोत ही सुं --

कुछ गाड़ियां साइड में पार्क हो रही हैं। जो इसका डिवाइडर है वो भी काफी सुंदर है। इसपे कुछ पौधों के पौधे लगे हैं पौधों में फूल लगने वाले हैं।

हम ये जो रास्ता देख पा रहे है। यह काफी अच्छा है जो इसका रोड है। वो भी शुद्ध बहोत ही स अच्छा रास्ता लग रहा है।

मै इस वीडियो में देख पा रही हूं इस पिक में कि जो ये डेकोरेट की शॉप है।

ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये एक सैलून की है। सैलून के बाहर कुछ कुर्सियाँ पड़ी है। कुर्सियों के नीचे रेड ग्रीन कलर का कार्पेट पड़ा हुआ है।